यहाँ पे एक बैनर लिखा हुआ है घर बैठे लिखने वाला काम के लिए गेट ईन जाने के लिए बोर्ड भी है एक--

यह एक लायब्ररी लग रहा है जो की सारे बच्चों को अलग अलग बैठने के लिए अलग अलग खंड लगा हुआ है तीन गेटे है ग्रील का जो है--

या एक रेस्टोरेंट कॅफे लग रहा है जिसमे ऐ_सी लगा हुआ है चार पाँच टेबल लगे हुए है।

यह किसी का घर बना है नया नया हरे कलर का जो की अभी उद्घाटन हो रहा है ग्रीह प्रवेश की तयारी हो रहा है शुभ लाभ क्योंकि दीवारों पे लिखा हुआ है।